यहाँ पे बगल में लाइट दिख रहा है बगल में--

इस गाड़ी में बैठते है।

ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रैन --

यहाँ पे दिख रहा है डब्बा वन में और --